एक बड़ा सा जंगल दिखाई दे रहा है।

एक सीमिट का कमरा उठाए हुए हैं।

वह झंडे लाल रंग के हैं नीचे की ओर एक स्टूल दिखाई दे रहा है।

और दूसरीयों में तरबूज कटे हुए हैं कुछ बर्तन भी दिखाई दे रहे हैं।